ये किसी पुराने से किले का दरवाजा दिखाई दे रहा है | यहा से अंदर जाने का और भी दरवाजे दिखाई दे रहे है काफी पुरानी इमारत है |और साइड मे कुछ झरिया भी उगी हुई है ।

यह नीचे तरह पानी दुकान लगी हे और बहुत से फ्लो के टेली कड़े हे रस्ते में बहुत से लोग आते जाते दिक् रहा हे एक रिक्शा बी हे रिक्शा में एक व्यक्ति ब्याट होंगे |